कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक टेबल दिखाई दे रही है।

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जिस पर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं।

बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

और सफेद आसमान दिखाई दे रहा है।

सफेद आसमान दिखाई दे रहा है।

और हरी घास दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।